कमरे में काफी अच्छी सजावट की गई है फूलों और पेपरों से और काफी सुंदर नजारा दिखाई दे रहा है।

काफी अलग-अलग प्रकार की मछलियां दिख रही हैं।

ये कोई स्कूल दिखाई दे रही है जहां पे काफी सारे मोमेडियन् बच्चे बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं और --

पेड़-पौधे दिखाई दे रहे हैं और काफी धूप पड़ रही है।

अ सुबह का टाइम है और काफी सुंदर नजारा दिखाई दे रहा है।

कई सारे और भी मछली रखे हुए है।

और इसपे प्राइस टैग दिखाई दे रही है।

जिसके बाहर एक गेट है काली रंग की।

ये एक एक्सरसाइज की जगह है जहां पे काफी सारी बैलून से सजावट की गई है एक्सरसाइज के सामान रखे गए हैं।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

और लोगों की काफी अच्छी चहल पहल है।

और कई सारे टेबल्स लगे हुए हैं कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं बैठे हुए और काफी अच्छी लाइटिंग ए_सी दिखाई दे रही है।

एक दूर में एक बाइक या स्कूटी दिखाई दे रही है और सुबह का टाइम है।